देख सकते हो कि गैरेज है जहां कार बन रही है। आजू-बाजू देखो की दो तीन कार खड़ी हुई है कुछ लोग है जो आजू-बाजू--

बहोत सारे जिओ की सिम मिलती जिओ यहाँ आप देख सकते हो की बहोत सारे चार्जर अर्जर रखे हुए--

जहाँ देखोगे की पूरी अलमारीयों में दवाई सजी हुई है दूर-दूर तक अलमारी अलमारी है ये दवाई-दवाई दिखेगी आपको।

आजू बाजू देखो की टेबल वाइस में यहां पर वो रखे हुए है गमले रखे हुए दो तीन ठो बहोत खूबसूरत सा एक होटल है।--

देख सकते हो कि एक मूर्ति का विसर्जन करवाने ले जा रहें हैं देखो की कुछ बाबा ओबा हैं।

ढाबा है ढाबा के आजू बाजू देखो की बहोत सारी सीट कुछ लोग खाना खा रहे हैं देखो कि सामने एक फ्रिज उसके सामने एक वो रखा हुआ--